और एक बाइक दिख रही है और एक टेंपो भी है। वाइट कलर का एक एक्टिवा भी है।

चली हुई हैं एक फैन भी दिख रहा हैंऔर नीचे --

पेयर रखी हुई हैं और ज्वेलरी शॉप का नाम लिखा हुआ हैं और इसमें --

इसमें एक मेट्रो ट्रेन की लाइन लाइन है इसमें एक बिजली का खंबा हैं बहुत सारे वायर हैं ।

और एक ब्रिज दिख रहा हैं रोड ब्रिज जिस पर बहुत सारा चित्र बना हुआ हैं ।

लाइट की रोशनी भी दिखाई दे रही है और दो टीचर भी दिखाई दे रहे एक सर है एक मैडम है सर ने व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है मैडम ने ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

क्रिया सामग्री की वस्तुएं रखी हुई हैं और भगवान के आसपास की वॉल पर बहुत सारे कलाकृति बनाई लोगों की कलाकृति बनी हुई हैं ।

ये एक गैरेज है गैरेज में--

और इसमें एक ग्रीन कलर का कारपेट लगा हुआ है और बहुत सारा डेकोरेशन किया हुआ है ये एक हॉल है।

और एक दो मजदूर हैं एक मजदूर जो काम कर रहा हैं ।

और इसमें मुझे बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे और ग्रीनरी दिखाई दे रही है और ऊपर मुझे आसमान दिखाई दे रहा है।